एक बड़ा सा खिला दिख रहा है यहां पे बाजू एक टीन शेड का रूम दिख रहा।

टू व्हेलर्स खड़े हुए हैं यहां सामने पार्क में इटंग के टुकड़े जेसीपी भी काम कर रही है।

फैन भी है बड़ा सा यहां पे रनिंग मशीन जॉगिंग मशीन आजू-बाजू बिल्डिंगा बहुत सारे झाड़ा भी है।

आजू बाजू छोटे छोटे पौधे उठे हुए हैं यहां नीचे लोग भी खेल रहे हैं पानी में यहां ऊपर आता हुआ--